किसी भी पहाड़ पर चढने के लिए बोहोत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है।

वे हमें साफ सुद्ध हवा देते है जिससे की हमारा स्वास्थ बोहोत ही अच्छा रहता है हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए।

ये ए.टी.एम. से बाहर खड़े एक व्यक्ति की फोटो है। आजकल --

डैम पानी को कंट्रोल करने के लिए बनाये जाते हैं जब --

ये बच्चे हाथ में कैंडल लिए हुए है ये क्रिश्चियन बच्चे है ये किसी --

डैम बोहोत ही इम्पोर्टेन्ट है। अगर डैम ना बनाये जाये तो लोगो में बाढ़ के कारण बोहोत ज्यादा नुकसान हो सकता है।

ये किसी फंक्शन में हॉल का मेन एंट्रेसगेट है जिसको बोहोत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है।

प्लस साइन का वो एक नेकलेस भी डाला हुआ है साथ में एक महिला भी है काफी लोग जमा हो रक्खे है।

स्कूल की बिल्डिंग का रंग थोडा उखड गया है और दीवारों में भी दरार पड़ गई है। कुछ बच्चे लोग बैठे हुए हैं।